यहाँ एक चित्र है और इस चित्र में एक कमरा दिखाई दे रहा है इस कमरे के अंदर बहुत सारी कुर्सियां और टेबल लगी हुई है जिसमें कुर्सी का रंग सफेद और --

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक हरा भरा जंगल दिखाई दे रहा है। जंगल में बोहोत सारे बड़े-बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं और जंगल से कुछ ही दूरी पे एक --

केक के ऊपर बहोत ही सुंदर सी डिजाइने की गई है। केक को एक मेज पर रखा गया। केक कुछ ही दूरी पर एक काउंटर के अंदर कई सजावट की चीजों को रखा गया।

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है इस रेस्टोरेंट के अंदर कई तरह की --

बहोत सारी चीजों को रखा गया जिसमें कुछ प्रोडक्ट के ऊपर एक बोर्ड लगी हुई है जिसमें एक प्रोडक्ट के ऊपर तीन सौ पचहत्तर थ्री थ्री फाइव थ्री थ्री नाइन --

इसमे हल्का रंग काला लाल और पी गुलाबी भी दिखाई दे रहा है। महल के चारों ओर हरी-भरी --

कुछ झूला का रंग आसमानी दिखाई दे रहा है। झूले पर कुछ बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे। झूले से कुछ ही दूरी पर बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

इसमें बोहोत सारी बकरियां खाना खाते हुए दिखाई दे रही हैं जिसमें कुछ बकरी का रंग भूरा और कुछ बकरी का रंग सफेद भी दिखाई रहा है। इसमें कुछ --

बीच पे तीन लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे और उनके पीछे चार लोग खड़े दिखाई दे रहे --

सभी लोग सफेद रंग के कपड़े पहने हुए और उनके गले में एक माला पहनाई गई है जिसमें --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

चीजों को रखा गया है जिसमें कई कपड़े भी है।

बहोत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुछ स्कूल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं और कुछ टीचर भी दिखाई दे रहे हैं।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

नीले रंग की माक्स पहना हुआ औ उनसे कुछी दूरी पे दो बेड भी रखा गया। बेड के ऊपर की बैग्स को रखे गए।

गार्डन के दोनों और हरे-भरे पेड़-पौधे लगाए गए हैं और गार्डन के कुछ ही दूरी पे कुछ झोलो लगाया गया --